इनके पास में कुछ बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं।

यह एक दुकान है और इस दुकान के अंदर कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

और इस दुकान के अंदर शैंपू वगैरा भी टंगे हुए हैं।

और उसके अंदर कुछ खाना भी रखा हुआ है।

और खाने के अंदर कुछ प्याज और हरा धनिया पास में हरी चटनी भी पड़ी हुई है।

और उसके पास में कुछ पर्दों से सजावट भी की गई है और एक आदमी के हाथ में मोबाइल भी है।

यह एक जिम है और इस जिम के अंदर बहुत सी मशीनें रखी हुई है।

और इसके छत में कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

और इसके पास में कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

और उनके पास में कुछ ईंटे भी रखी हुई हैं।

उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

ग्रिल पर कुछ कपड़े भी रखें हुए हैं।

यह एक मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय है और इसका गेट लोहे से बना हुआ है।

और एक प्लास्टिक की कुड़सी भी रखी हुई हैं।

दीवार के अंदर एक लकड़ी का दर भी है।

दुकान के पास में कुछ बिजली के तार भी हैं।

इसके अंदर कुछ बाल और कुछ बल्ले टंगे हुए हैं।

जिस पर कुछ प्लास्टिक के डब्बे भी रखे हुए हैं इसके अंदर एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

यह एक घर है इस घर के अंदर बहुत सी औरत खड़ी हुई है और एक आदमी भी है और कुछ बच्चे भी है।

के पास में एक तिरंगे का झंडा लगा हुआ है।

यह एक बहुत ही अच्छा रूम है इस रूम के अंदर कुछ सोफे पड़े हुए हैं उनके ऊपर कुछ तकिये भी रखे हुए हैं।

यह एक पहाड़ है और इस पहाड़ के अंदर एक सुरंग है।

इसके अंदर एक बेंच और बहोत सी कुर्सियां रखी हुई है।

और इसमें कुछ लोहे के खम्भे भी गड़े हुए हैं जिनके ऊपर व्हाइट कलर की रसियां बंधी हुई हैं।

और इसके अंदर कुछ कांच के शीशे भी लगे हुए हैं।

तीनों के बराबर में कांच से बनी हुई ग्रिल भी है।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

टेबल के बीच में कुछ गत्ते के बॉक्स भी रखे हुए हैं और इनके ऊपर एक घड़ी भी लगी हुई है।

उनके अंदर कुछ सामान रखा हुआ हैं।

और इनपे कुछ पेड़ और घास जमा हुआ है।

और उनके आगे दो आदमी और दो बच्चे खड़े हुए हैं।

यह एक गार्डन है और इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।

और उनके आगे एक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है।